इस इमेज में एक रेस्टोरेंट दिख रहा है।

जिस पर कुछ खाने के सामान भी रखी हुई हैं।

और पीछे वर्कर सभी खड़े हुए हैं।

जिसमें काफी सारे पीछे पेर - पौधे दिख रहे हैं।

और सामने एक टीचर भी बैठे हुए हैं नीचे ग्रीन कलर का कारपेट बिछाया गया है।

और लाइटिंग का भी काम अच्छा किया गया है जो कि वाइट कलर का है और पीछे कुछ जगह भी खाली है।

और जिसमें कुछ ग्लासेस भी रखी हुई हैं।

और यहां पे एक सामने में कैमरा भी दिख रहा है।

बिकने के लिए रखे हुए हैं जिसमें कुछ मग कुछ थर्मस भी है।

और उसके पीछे एक बिल्डिंग भी है और साइड में एक और पेट दिख रहा है।

और उसमें एक लड़की बैठी हुई है उसके नीचे--

अंदर ओम यानी मंदिर बनाए गए हैं और पीले कलर के कर्टन से।

ऊपर में एसी लगा हुआ है वेंटिलेशन के लिए।

जिसमें कुछ लाइटें भी लगी हुई है नीचे टाइल्स का फ्लोर है।

इस इमेज में एक एटीएम दिख रही है जिसके ऊपर लिखा हुआ है स्टेट बैंक एटीएम ।

और ठीक उसके सामने एक आदमी खड़ा हुआ है जो कि पैसे गिन रहा है।

और दरवाजा बंद है एटीएम का।

साथ में काफी सारे लोग खड़े हुए हैं ऊपर बादल का भी स्केच बना हुआ है।

यह एक छत की तस्वीर है।

पीछे दो तार की पेड़ दिख रही हैं।

और कुछ घरें भी दिख रही हैं पीछे से।

यह एक रेस्टोरेंट की इमेज है।

और उसके सामने टेबल भी रखे हुए हैं।

अंदर में एक बेलू कलर की टेबल है।

काफी सारे पत्थर दिख रहे हैं।

बीच में एक छोटा सा सूखा हुआ पेर है ।

जिस पे एक कौवा भी बैठा हुआ हैऔर बाकी दो-तीन पत्थर इधर-उधर नजर आ रहे हैं।

और भी कई सारी दुकानें हैं जैसे कि लोन पे फोन --

सामने में एक ही बिल्डिंग में सारे ये दिख रहे हैं।

और नीचे लिखा हुआ है इंजीनियरिंग फॉर यू --

यह एक रेस्टोरेंट का इमेज है।

सामने में तीन-चार आदमी खड़े हुए हैं।

यह एक मस्जिद की तस्वीर है।

उसके ऊपर रेलिंग भी है जैसे बालकनी --

इस तस्वीर में बच्चों के खेलने के लिए एक रूम है।

जो कि वाइट कलर और मरून कलर में है।

जिस पे भी काफी लोग दिख रहे हैं।

पीछे में एक बिल्डिंग भी नजर आ रही है।

उसके पीछे भी एक ऑटो हैजो कि खाली है।

कटी हुई डिजाइन चेयर बनाई गई हैं और बीच में एक टेबल भी है।

जो कि अभी चल रही हैं और वाइट कलर का फ्लोरिंग भी किया गया है।

साइड में एक आदमी भी खड़ा है।

और उस गेट के अंदर एक बड़ा सा ग्राउंड भी है।

इस इमेज में एक बड़ी सी रोड़ दिख रही है।

उसके साइड में एक केक की शॉप भी है।

जिसमें से कुछ खुली हुई हैं कुछ बंद है।

यह एक पार्क की तस्वीर है।

और साइड से रास्ते भी दिख रहे हैं जो कि--

जो कि बाहर से बिल्कुल खाली है।

और रोड पे एक पेड़ भी है जिसकी परछाएं भी रोड पे बन रही है।

और काफी सारे जिम की प्लेटें भी रखी हुई हैं।

इस इमेज में रोड पे काफी सारे आदमी दिख रहे हैं।

जो कि अपने हाथों में बड़ा सा ड्रम लेके--

जिसमें ब्लू कलर की छोटी-छोटी बॉक्सेस बनाई गई हैं।

ऊपर दो पंखे भी हैं और लाइटिंग का भी काम --

और यह बिल्डिंग वाइट कलर की है।

जिस पे एक आदमी चल के ऊपर जा रहा है।

सामने में एक डस्टबिन है साइड में--

नीचे जमीन दिख रही है जो कि थोड़ी सी टूटी हुई है।

ऊपर कुछ लाइटिंग का काम किया गया है।

सब अपने-अपने बैग लेके गए हैं योगा करने के लिए--

जो कि रेड कलर का पत्थर से बनाया गया है।

इस इमेज में एक बड़ी सी भवन दिख रही है।

फिर ए_फ केक्स की भी दुकान है।

जो कि स्टेशन बिल्कुल खाली है प्लेटफार्म बिल्कुल खाली है।

पीछे एक वाइट कलर की बिल्डिंग भी है।

सामने में कुछ चेयर दिख रही हैं।

साइड में एक पंखा भी लगा हुआ है।

दो चेयर खाली हैं एक चेयर पे एक आदमी बैठा हुआ है।

यह एक चर्च की इमेज है।

जिसमें कुछ पादरी बैठ के--

जो कि वाइट कलर का शर्ट और ब्लू कलर का जींस पहना हुआ है।

खड़े होकर के हाथ में माइक लेकर के--

उसके सामने एक छोटी सी पोडियम भी है।

ऊपर में ब्लू कलर की स्काई है।

यह एक सड़क की इमेज है।

जिसमें एक आदमी गाड़ी को बोड़ी से उ--

बोड़ी को गाड़ी से उतार रहा है और एक आदमी बोड़ी को लेकर के जा रहा है।

कुछ वाइट कलर की बुड़ियां रखी गई हैंऔर कुछ येलो कलर की बुड़ियां हैं।

जो कि अंदर जाने का वेट कर रहे हैं।

इस इमेज में एक वाइट कलर की कार दिख रही है।

उसके पीछे एक रोड नजर आ रही है।

इस इमेज में एक बेंच भी है जो कि खाली है।

और ऊपर एक पंखा भी लगा हुआ है।